इस तस्वीर में मुझे इंदिरा आई_वी_एफ का क्लीनिक दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे एक बुद्ध का मंदिर दिखाई दे रहा हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही है।

तस्वीर मे मुझे कागज के डायनासोर दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में कुछ लैंप लाइट दिखाई दे रही--

तस्वीर में मुझे दो झंडे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे खेतों में बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है।